चेयर के आगे एक कांच का टेबल है टेबिल के ऊपर सैनिटाइजर की बोटल यल्लो फाइल और एक कलरी की फाइल रखी है।

यह एक कालोनी है कॉलोनी में एक रोड है रोड के सामने एक टेंट लगा है टेंट के ही बगल में एक घर है घर के बगल में एक पेड़ है घर के सामने एक गेट है।

टेम्पू में कई लोग है ऊपर सफेद आसमान है यहाँ पर हरे-भरे पेड़ है एक और वाइट कलर की कार है।

टीन शेड क पीछे ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए है उन्ही के पीछे वाइट कलर के घर बने हुए है बहुत सारे--

ऑरेंज कलर से कुछ लिखा है उसी के ही पीछे एक बाउंड्री है व्हाइट और रेड कलर की बाउंड्री है के सामने एक ग्राउंड फ्लोर है वह रेड कलर का है पीछे पेड़ है बगल में खम्बे है।

पेड़-पौधों की दुकान है दुकान में बहुत सारे पेड़-पौधे है जैसे ग्रीन कलर पिंक कलर और पीछे एक अंकल है अंकल ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है पीछे टीन शेड है और पीछे परदे लगे कई एक झोला रखा है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग क्रीम कलर की है बिल्डिंग के ऊपर कई कलर के परदे डले हैं उनपे कुछ लिखा हैं ।

यह एक बहुत बड़ा जंगल है जंगल में एक वॉटरफॉल है।

यहाँ पर दो बिल्डिंग है एक बिल्डिंग के सामने कई गाड़ियां खड़ी है और एक बिल्डिंग में कई गेट और खिड़की है।

और वहाँ पे एक बाइक खड़ी है बाइक से एक अंकल टिकें है जिनने रेड कलर का शर्ट पहना है और ब्लू कलर का पैंट पहना एक और अंकल है जिनने व वाइट कलर का शर्ट पहना--